और यहाँ पर हमे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमे एक वाल दिख रही हैं जो की हमे वाइट कलर की हमे दिख रही हैं।

और यहांपर हमे एक थैली के अंदर नजर आ रहे हो हमे यहाँ पर काफी सारा शैल नजर आ रहा हैं जिसके अंदर हमे काफी सारे वाइट कलर के कपडे भी दिख रहे हैं।

और हमे यहाँ पर एक फैन रहा हैं जिसका कलर हमे ब्रॉउन दिख रहा हैं वाइट कलर लाइट भी हमे देखने को मिल रही हैं और हमे यहाँ पर कैची दिख रही हैं एक बुक नजर आ रही हैं और एक पेन भी हमे यहाँ पर दिख रहा हैं और एक आदमी भी हमे यहाँ पर हमे पर दिख रहा है।

यहाँ पर हमे एक शॉप नजर आ रहीं हैं जिसके ऊपर हमे एक बैनर दिख रहा हैं और हमे यहाँ शॉप के बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ दिख रहा हैं जो की ब्लू-कलर --

का हैं और यहाँ पर एक शॉप के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ हैं जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हैं ब्लू जीन्स पहने रखी हैं और हमे यहाँ पर एक व्हाईट कलर का शटर दिख रहा हैं और हमें यहाँ पर कुछ चिप्स के पैकेट भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर हमे एक छोटासा तालाब दिख रहा है जिसके अंदर हमे काफी सारा पानी दिख रहा है हमे ऊपर काफी सारी ग्रासेस नजर आ रही है यहाँ पर हमे एक पेड़ भी दिख रहा है।

यहा पर हमे एक रोड़ नजर आ रहा है और हमे यहा पर हरे हरे इलेक्ट्रिक वायर्स जाते हुए दिख रहे है हमे यहां पर काफी सारे पेड़ दिख रहे है देखिए हमे ग्रीन कलर के दिख रहे है और यहां पर काफी सारी ग्रास नजर आ रही है।